और कुछ पैकेट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। टेबल नजर आ रही है। आसमान अ फ्लोर नजर आ रहा है। सीलिंग नजर आ रही है लाइट्स की।

यहाँ पर पिंजरा है पिंजरे में अलग-अलग तरीके के अ पक्षी हैं जिसमें मिट्ठू है और वाइट कलर का तोता है और कब कबर ची --

यहाँ पर हॉस्पिटल का नजारा शायद नजर आ रहा है जिसमे बैठक व्यवस्था है| बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है।

शादी का माहौल चल रहा है। फॉक्स लग रहा है और --